हरे लाल ब्लू कलर की लाइटे लगी गई है।

आगे मैं बहुत सारे टेबल और कुर्सियां भी रखी गई है ।

जोकि कुछ लाल तो कुछ सफेद कलर की है।

यह एक मंदिर का फोटो है।

बहोत सारी लाइटें भी लगी हुई है।

जिसमें एक बहुत बड़ा पोस्टर भी लगा हुआ है।

यह एक मॉल है जो कि बहोत बड़ा है।

दो कीबोर्ड भी है और दो माउस भी है।

और इसमें दो सर भी है और एक मैडम भी है।

जो सफेद कलर का है।

आगे में एक आदमी खड़ा है और बस के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं ।

इसमें लिखा है अजंता डायरी और साइड में बहोत सारी बाइक रखी गई है।

और एक दीवार भी है।

हर एक बेडस पे आदमी लेटे हैं कोई बैठे हैं।

यह एक बंगला है जो की बहोत बड़ा है।

जिसमें बहोत सारे कलेक्शन के कपड़े रखे गए हैं।

एक ऊपर में झूमर भी लगा हुआ है।

और बहोत सारे लोग बस के अंदर बैठे हुए हैं।

जिसमें एक आदमी बाइक चला रहा है।

और साइड में बहुत सारे पेड़ भी है।

इसके ऊपर में अल्वेस्टर है।

यह एक किसी फैक्ट्री का फोटो है।

जो कुछ काम कर रहा है।

और एक टोपी भी पहना है जो कि काले कलर की है।

यह एक बहुत बड़ा दुकान है।

डमरू और बॉक्स भी रखी गई है।

साइड में एक कपड़े का दुकान भी है।

और दीवाल के ऊपर में एक ए_सी भी लगाया गया है।

यह एक रोड है जिसके ऊपर में एक पुल बना हुआ है।